दोस्तों यह कोई एक कॉलेज लग रहा है मुझे तो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरा लग रही है।

बहोत व्यंजन है ये रसगुल्ले और जिसमें ये जितना मीठा होता है उतना ही लोगो के अंदर भी मिठास भरता है।

और यहां बहोत सारे कार्यक्रम हो किए जाते है।

दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह एक शादी का टेंट लगा हुआ है यहां पे--

दोस्तो यह एक गद्दी दिखाई दे रही है यहां आगे खाना खजाना का बोर्ड लगा हुआ है।

ये एक मछली दुकान लग रही है जहाँ काफी दुकानदार भी है मछली की दुकानों में और कस्टमर वगैरा भी है।